यह एक स्टेज है स्टेज के सामने चेयर लगी हुई है और स्टेज पर लाइटें दिख रही है| पीछे येल्लो और पिंक कलर में डेकरैशन किया हुआ है परदे लगे हैं।

एक रास्ता दिख रहा है नीचे बिल्डिंग है और उसमे गेट बना हुआ है और ऊपर ग्रीन कलर का बोर्ड लगा है और दो लोग अन औरते अंदर जा रही है।

पहाड़ी है पहाड़ी के नीचे मैदान है। जहाँ कुछ पौधे और हरी अ --

रास्ता हैं। एक लाल कलर की बाइक रखी हुई है और नीचेभी दो-तिन गड़िया पार्क करी हुई है।

मैदान है मैदान में एक आदमी नीचे बैठा हुआ है और एक खड़ा है और दो तीन कार गाड़ियाँ पार्क करी हुई हैं।

योगा क्लास दिख रही है बड़ा हॉल है। जिसमें खिड़कियां लगी हैं और योगा शीट पे --

यह रास्ता है। रास्ते पे एक अ अ ऑटो दिख रहा है और साइडमें घास लगी हुई है और बीच मे एक अ मीनार बनी हुई है।